यह एक बैंक है। यह बैंक के अंदर की फोटो है। यहां बोहोत तरीके के गुब्बारे लगे हुए हैं।

यह एक ऑफिस की फोटो है। यहा कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।